और ये एक कैफेटेरिया है कैफेटेरिया के अंदर एक काउंटर है यहां काउंटर के सामने --

ये पेपर के वाइट शीट्स है और यहां पे बहुत सारे कलरफुल शीट्स भी दिखाई दे रहे हैं।

फ्रूट स्टॉल दिखाई दे रहा है यहां पे बहुत सारे फ्रूट्स है और यहां फ्रूट के बास्केट्स है और यहां--

टूल के ऊपर आरती की थाली है दिखाई दे रही है यहां --

यहां एक एयरपोर्ट दिखाई दे रहा है और यहां पे कुछ काउंटर्स दिखाई दे रहे हैं।

इमीग्रेशन का एक बोर्ड दिखाई दे रहा है अलग-अलग कैबिन से --

ये एक शॉप दिखाई दे रहा है और यहां बाहर बोर्ड है एयरटेल ये एक एयरटेल शॉप है।